रास्ते में एक ऑटो आ रहा है जिसकी बीट येलो कलर के है ऑटो काले रंग का है सामने एक साइकिल खड़ा हुआ है ऊपर आसमान व्हाइट दिख रहा है।

एक बड़ा सा का बना हुआ है जिसमें कलर येलो है ऊपर ग्रीन है और आसमानी कलर है नीचे में पानी है।

बहुत बड़ा-सा रूम है जिसके वॉल का कलर वाइट है बॉर्डर रेड है और नीचे में बीट ब्लू साइड में एक बड़ा सा ग्रिल लगा हुआ है।